प्लेटफार्म अ स्टेशन है यहाँ पे बहुत ही बड़ा अ स्टेशन अ छोटा दिख रहा है। यहाँ पे ज्यादा आदमी नहीं है दो-तीन कुछ आदमी है। ये रेलवे स्टेशन जमुई का लग रहा है।

बस स्टैन्ड मे बस एक दो बहुत तीन बस लगा हुआ है चार बस लगा हुआ है।

ये कार है होंडाई कंपनी का।

ये कार न्यू है इसलिए इसे पूजा हुआ है।

सुनसान रोड में तालाब में बोहोत सारे गाय-भैंसें पानी पीने नहाने के लिए जा रहे है। यह तस्वीर में स्पष्ट रूप से दिख रहा है।

ये जमुई का स्टेडियम मैदान है ।

एक पहाड़ के पीछे भी जंगल है यहाँ पे ये व अपने फोटो क्लिक कर रहे हैं ये प्राकृतिक नजारा बहोत ही सुन्दर और स्पष्ट बहोत शानदार दिख रहा है।